और मोटरसाइकिल साइकिल दिख रहे हैं बहुत सुंदर दिख रहे हैं खूबसूरत दिख रहे हैं ।

दिख रहा है ग्राउंड दिख रहा है सुन्दर दिख रहा है यहाँ पास हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहा है।

और यहाँ पास एक पेड़ दिख रहा है झंडा उसके ऊपर लगा है आऊ दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा दिख रहा हैं ।